एक दुकान मे पाइप और दरवाजा है।

एक मूर्ति है जो पीले कलर का है।

एक लाल पोल भी नजर आ रहा है बगल में एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है।

इसके पीछे ब्लैक परदा लगा हुआ है स्टेज के बगल में छे सात डी_जे रखे हुए हैं ऊपर लाइट भी जल रहा है।

एक बहोत बड़ा फूल है जो वाइट कलर का है।

एक आदमी अंदर मटन बना रहा है और बाहर कुछ लोग खड़े ह--

बिल्डिंग दो तल्ला का है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग हैं।

बहोत सारा पेड़ भी दिख रहा है चारों तरफ।

कुछ बच्चे दिख रहे हैं खड़े।

इस शोरूम का नाम यमाहा टशन मोटो है।

अलग अलग बाइक का चित्र बना हुआ है।

दुकान के बाहर हरा रंग का पाइप रखा हुआ है।

एक पौधा भी है बगल में।

यह एक बैंक का दृश्य है जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया है।

बैंक के बाहर एक गाड़ी हैं और एक स्कूटी खड़ा है।

कैफे में पिंक कुर्सी भी नजर आ रहा है।

यहां अनेक काला रंग का संगमरमर का पत्थर है।

घर में एक फूल भी है।

एक बाइक भी दिख रहा है।

एक सफेद टंकी भी छत पे नजर आ रहा है।

ये काफी दूर तक फैला हुआ है।

यह एक पार्लर का दुकान का दृश्य है जिसका नाम ए वन एन जे बी पार्लर है।

जहां अंदर में कुछ लोग भी हैं।

अंग अंदर में दो कबर्ड भी दिख रहे है जिसमें कॉपी ये सब रखा हुआ है ।

कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं कुछ बाइक पे खड़े हैं।

ट्रक बाहर खड़ा है जिसमें जय माता दी लिखा हुआ है।

जहां बाहर टोकरी मे अलग अलग प्रकार के सब्जी रखे हुए हैं।

अंदर में एक लाल कुर्सी भी है।

एक आदमी खड़ा और एक बैठे हुए हैं और बहोत से लोग उधर दिख रहे हैं।

एक पानी का बॉटल टेबल पे रखा हुआ है सामने एक टी_वी भी है।

एक कैमरा भी दिख रहा है कुछ लाइटे जल रही हैं।